आगे मैं रेलवे की पटरियों को देख पा रही हूं।

एक पोस्टर बना देख पा रहे हूँ।

सामने मैं एक पहाड़ देख पा रही हूं।

सामने में बहोत सारे दुकानों को--